एक खंडेलवाल रेड कलर के अक्षरों में लिखा है तथा ढाबा ब्लू कलर के अक्षरों में लिखा हुआ है।

ये फोटो नाइट में क्लिक किया हुआ है तो साफ पता नहीं लग रहा है।

फोटो में मुझे एक बड़ी टेबल दिखाई दे रही है जिसके ऊपर बहुत सारी व्हाइट कलर की प्लेटें रखी हुई है।

फोटो में मुझे एक सड़क के किनारे का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसके पीछे की तरफ एक बड़ी वॉल है।

यहां पर बाहर की तरफ दो व्यक्ति भी मुझे दिखाई दे रहे है वह सड़क के किनारे कुछ घास उगी हुई है।

फोटो में मुझे एक बच्चों के डांसिंग क्लास नजर आ रही है।